और उपर में यहाँ पे तेल भी दिया हुआ है जिस में प्राइस भी लिखा हुआ है पारले-जी बिस्कुट भी है मैगी भी है।

मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ और वहाँ से कुछ लेना भी चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं वहाँ --

पानी वाला जहाज है जो समुन्द्र में चल रही है।